यहाँ पे कुछ परदे लगे हुए है यहाँ पे नीचे कुछ लाइट चमक रही है नीचे जमीन ब्राउन कलर की दिखाई पड़ रही है पीछे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे है।